इस चित्र में काफी हरियाली हमें नजर आ रही है। यहाँ पर एक गाड़ी पे एक मोटर साइकिल पे एक आदमी जा रहा है। काफी सारे लोग यहाँ पर वॉक भी कर रहे हैं।

और यहाँ पे एक प्लास्टिक का हमें बोटल भी नज़र आ रहा हैं होटल यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है और ऊपर एक लोगो भी है जिसमें लाल रंग का एक --

यहाँ पर अ एक इस क्षेत्र में एक अ मुझे नज़र आ रही एक मंदिर हैं जो गौतम बुद्ध की जिसमें मूरत है काले रंग की और उनका सिंघासन जो है वो है अ सु सुनहरे रंग का।

यहाँ पर काफी सारी औरते हैं जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है एक औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और एक अ बाई ओर पे एक आद --

इस चित्र में मैं देख सकती हूँ यहाँ पर एक मंदिर है गौतम बुद्ध का और यहाँ पर काफी सारे लोग आये हुए हैं। गमले हैं। एक औरत अपने बच्चे को लेके खड़ी हुई है।